ये किसी एयरपोर्ट का फोटो है यहाँ पे एक हमे प्लेन नजर आ रहा है जो की ब्लू और व्हाइट कलर का है प्लेन काफी बड़ा है और उस के आसपास कुछ लोग भी खड़े हुए हैं यहाँ पे।

अ यह किसी प्रोग्राम का फ़ोटो है अंदर काफी सारी डेकोरेशन की हुई है येलो कलर की यहाँ पर लाइट्स हैं चार खिड़कियाँ भी दी हुई हैं अंदर काफी सारे लोग हैं जिन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ --

माइक लगा है सबके हाथ में बुक है वह सारे ही लोग बुक पढ़ रहे हैं और नीचे गर्दन किए हुए हैं और काफी सारे लोग चेयर्स पे बैठे हुए हैं।

मैन गेट पे बलुन्स है और फ़्लोवर्स से डेकोरेशन करी हुइ है यहाँ पे येल्लो पिंक और ब्लु कलर की लाइट से डेकोरेट किया हुआ है कुछ लोग यहाँ पे बाल्कनी पे खडे हुए भी है और बाहर काफ़ी साफ़ सफ़ाई और ये बहुत अच्छा है।

यहाँ किसी अकडमी का फ़न्सन चल रहा है शायद अनुवल फ़न्सन है यहाँ पे कुछ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे है स्टेज पे दो लडकिया एक ने रेड कलर का ओउट्फ़ीट पेहना और एक ने व्हाईट कलर का।

और यहां पे मुझे एक फैमिली दिख रही है पीछे छोटी सी झोपड़ी है झोपड़ी के ऊपर चादर डाले हुए हैं और यहाँ पर फैमिली है तीन जेंस है और सारे बाकी लेडिस हैं दो बच्चे भी हैं।

काफी सारी मछलियाँ हैं। यहाँ पर बोहोत से लोग ख खरीद रहे हैं मछलियाँ बोहोत से लोग मछलियाँ बेच रहे हैं।

और बहुत अच्छे से डेकोरेट है वो ब्राउन कलर में है वाइट और येलो कलर का आ उसपे वर्क किया हुआ है और बहुत अच्छा और लड़के ने है ना ग्रीन कलर की टी-शर्ट पहनी है।

उनका फोटो हैं यहाँ पे दो लेडी डॉक्टर हैं बाकी जेंट्स हैं सबने हैं ना ड्रेस पहने हुए हैं नर्सिंग का और एक डॉक्टर ने ग्रीन कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट --